बिग वन तो गरवारे ई_जी_सी बोल बोलो।

बहुत सारे बैठने की जगह वाइट कलर के बे अ टेबल वाइट और येल्लो कलर के कुशनस --

ब्लू कलर की साड़ी डार्क ब्लू कलर की साड़ी पर्पल कलर की साड़ी ग्रीन कलर की साड़ी रेड --

रेड कलर की साड़ी साड़ी की दुकान वाइट ग्रे कलर की साड़ी बहुत सारी साड़ी--

और बहुत सारी अलग -अलग शेप पर अलग -अलग कलर के वास एक आंटी जिसने स्वेटर पहना है ।